यह चित्र में हमे कोई मॉल का एक एरिया दिखाई दे रहा है।

उसमें एक नीला कलर का बोर्ड है कई सारी साबुन के ब्रांड्स रखे हुए हैं दो पंखे लटके हुए हैं कई सारी लाइट्स हैं।

यह चित्र में एक हॉस्पिटल दिखाया गया है जिस हॉस्पिटल का नाम है रेफरल हॉस्पिटल ।

जमीन काफी पीली दिखाई दे रही है।

कि नजर आ रही है खिड़की के बाहर कुछ पेड़ भी नजर में आ रहे और सफेद कलर के टाइल्स भी लगे हुए है।

यह किसी के घर का आंगन लगता है जहां पर कई सारे पेड़ हैं।

और यहां पेड़ के जो नीचे का भाग है ओ ऑरेंज कलर का है और साइड में राइट साइड में भी दो गमले रखे हुए हैं।

यह चित्र में हमें कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं एक सफेद कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह चित्र को देखने पर पता चल रहा है यहां कोई दुकान है।

जिसके ऊपर हह कई सारे फोन लटकाए हुए हैं।

जिसके आजू बाजू कई सारे पेड़ हैं पीछे दीवार है।

और भी टिशू पेपर यहां पर रखे हुए हैं।

यह चित्र में हमें दो गाड़ीयां दिख रही हैं जिसमें एक स्कूटी है और एक बाइक है।

जिसके उपर लिखा हुआ है भगवती गार्डन रेस्टोरेंट --

और कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

सामने एक नेट लगा हुआ हैं अंदर दो खंबे लगे हुए हैं लाइट के।

नीचे मिट्टी लगी हुई है चौक से लकीरें मारी गई है।

वायर लगे हुए हैं और उस बाजू में ही एक रोड भी निकली हुई है।

बाजू मे एक ऊपर की तरफ बम्बू लगे हुए है दो बंधे हुए --

जिसमें एक वॉश बेसिन है तीन खिड़कियां हैं एक दरवाजा है ए_सी लगी हुई है।

और दो पीले कलर के दरवाजे जैसी चीज भी दिखाई दे रही है।

यह चित्र को देखकर कह सकते है कि ये कोई ढाबा --

यहां फोटो में हमें सामने एक पिज्जा लिखा हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा है।

उसके ठीक बाजू में द टी डी पिज्जा लिखा हुआ है लाल रंग चित्र बने हुए हैं पिज्जा कैचप के।

यहां सामने की तरफ हमें पीछे की तरफ दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नीचे कांच का दरवाजा है और कुछ पौधे हैं बाहर की तरफ देखने जाएं तो एक सफेद कलर की कार खड़ी हुई है।

इसके ऊपर लिखा हुआ है श्री हनुमान ड्राई क्लीनर ऑल टाइप ऑफ ड्राई क्लीनर ।

और वहां पे उसका नाम लिखा हुआ है और दो मोबाइल नंबर दिए गए हैं।

ये एक मॉल का जगह है जहां पर आजूबाजू में काफी सारी चीजे रखी हुई है और ये तेल का सेक्शन है।

सामने अलमीरा बने हुए हैं और वॉश बेसिन के भी अलग अलग टाइप बने हुए हैं और शीशे भी रखे हुए है।

एक तकिया रखी हुई है और कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं जिसके ऊपर कुछ कपड़े अलग अलग तरह के रखे हुए हैं।

जो है वो उसके पीले कलर की है।

और ये सब वो दिखाकर अपने कस्टमर्स को बेचेगा --

यह चित्र को देखने पर एक बिल्डिंग समझ में आ रही है।

पंखा लगा हुआ है और बाजू बाजू दरवाजे के आजू बाजू में दो बोर्ड लगे हुए हैं एक कुर्सी भी लगी हुई है।

बाजू में एक बाइक खड़ी है जिसका टायर हमें दिखाई दे रहा है पीछे दो कार दिखाई दे रही है हमको एक सफेद कलर की एक ग्रे कलर की --

सामने एक खंबा है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और उस पर ज़िरोक्स लिखा हुआ है पीछे एक पेड़ भी है।

दो केचअप के डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

एक तार हैं एक बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर बेक न टेक --

यह चित्र में हमें चार पेड़ दिखाई दे रहे है।

और नीचे जमीन दिखाई दे रही है और तो एक सामने एक सफेद कलर का तीन खिड़की वाला घर भी देखने में आ रहा है।

एक लड़की चल रही है और कई सारे झाड़ देखने को हमें यहां मिल रहे हैं।

यहां पर टेबल है कुर्सियां लगी हुई हैं फूल से भला गमला लगा हुआ है।

यह एक बेक्ररी शॉप है जिसमें कांच का फ्रिज है जिसके अंदर काफी सारे केका रखे हुए हैं।

और राइट साइड में सफेद कलर की दीवार है जिसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं।

यह चित्र को देखने पर समझ आ रहा है कि यह एक लाल कलर की स्कूटी खड़ी हुई है।

और यहां घर का कलर सफेद और भूरा है।

यह चित्र में हमें सबसे पहले दूर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।